यहाँ पस कुछ सामने भी दुकान दिखाई दे रही है बहुत सारी और यहाँ बस पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पर से एक बहोत बड़ा मेन द्वार जैसा बना हुआ है।